और फिर बच्ची भी बेठी हुई है और दो लोग है जो आपस मे बात कर रहे है ।

आं जिसके साइडों पर बहुत खूबसूरत दरक्‍त लगे हुए हैं और लोग वहां पे आ --

बैठे हुए है सवाद ले रहे है और दरिया मे पानी बहुत जादा है ।

एक महिलाये है जो एक बच्चो के बालो को तेल लगा रही है और एक आशीर्वाद दे रही है ।

वह एक दुकाने है कुछ दुकाने भी बनी हुई हैं ।

इंडिया का एक बहुत ही मशहूर डेल्ही का संजीवन हॉस्पिटल है जहाँ पर --

कुछ ठहरे हुए हैं वहा पे खाने पीने कि चीजे --

एक बहुत सारा मैंदान है जिसके इर्द-गिर्द --

नए तरह चमका दिया जाता है यहाँ पे भी एक गाड़ी ठहरी है और एक कुश ठहरा हुआ है ।

अब बंद है और वहां पे बॉस सर्विस भी है हॉस्पिटल सि --